अ नाव में कुछ ल कुछ रखा हुआ भी है यहाँ बहुत बड़ा नदी दिखाई दे रहा है बहुत सारा नाव भी है यहाँ रेत भी है और उसमें आदमी भी कुछ दिखाई दे रहा है बहुत दूर ब्रिज भी दिखाई दे रहा है।